perl में special variables पर स्पोकन में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न के बारे में सीखेंगे :
इस tutorial के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ:
पूर्वआवश्यकता में आपको पर्ल प्रोग्रामिंग की कार्यकारी जानकारी होनी चाहिए
यदि नहीं तो सम्बंधित पर्ल ट्यूटोरियल्स के लिए स्पोकन ट्यूटोरियल वेबसाइट पर जाएँ
special variables क्या होते हैं
special variables पूर्वपरिभाषित वेरिएबल्स होते हैं जो पर्ल में एक विशेष मतलब रखते हैं
इन्हें उपयोग से पहले इनिशिअलाइज़ करने की ज़रुरत नहीं होती है
ये डिबगिंग को नियंत्रित करने के लिए सर्चेस के परिणामों इन्वाइरन्मेन्टल वेरिएबल्स और फ्लैग्स को रखने में उपयोग होते है
पहले हम ग्लोबल स्पेशल वेरिएबल्स के बारे में सीखेंगे
$_: डॉलर अंडरस्कोर यह व्यापक रूप से उपयोगित स्पेशल वेरिएबल है
$_ डॉलर अंडरस्कोर बहुत से फंक्शन्स और पैटर्न को ढूँढने वाले स्ट्रिंग्स के लिए डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है
अब एक सैंपल प्रोग्राम प्रयोग करके $_ डॉलर अंडरस्कोर वेरिएबल के उपयोग को समझते हैं
मैं special dot pl file खोलूँगी जो मैंने पहले ही बनाई है
टर्मिनल पर जाएँ और टाइप करें: gedit special डॉट pl ampersand और एंटर दबाएं
special dot pl फाइल अब gedit में खुलती है स्क्रीन पर प्रदर्शित की तरह कोड टाइप करें अब मैं कोड समझाती हूँ
यहाँ दो foreach लूप्स हैं ये दोनों foreach लूप्स समान परिणाम निष्पादित करेंगे
लूप के प्रत्येक इटरेशन में वर्तमान स्ट्रिंग $_ में रखी जाती है
और यह डिफ़ॉल्ट रूप से प्रिंट स्टेटमेंट से उपयोग किया जाता है $_ डॉलर अंडरस्कोर एक अतिरिक्त वेरिएबल $color के उपयोग को सेव करता है
फाइल को सेव करने के लिए ctrl+s दबाएं
फिर टर्मिनल पर जाएँ और निम्न टाइप करके पर्ल स्क्रिप्ट को निष्पादित करें perl special dot pl और एंटर दबाएं
यहाँ दोनों foreach लूप्स समान आउटपुट देते हैं
अब एक अन्य उदाहरण देखते हैं यह प्रदर्शित करने के लिए कि $_ डॉलर अंडरस्कोर वेरिएबल कैसे अन्तर्निहित होता है special dot pl file पर वापस जाते हैं
स्क्रीन पर प्रदर्शित कोड का अंश टाइप करें
यह प्रोग्राम firsttxt फाइल को लाइन बाइ लाइन पढ़ता है फिर यह पूरी data फाइल में से सारी लाइन्स पढ़े जाने तक लूप करता है
print $_ वेरिएबल firsttxt फाइल से वर्तमान लाइन की विषय वस्तु को प्रिंट करता है while लूप में $_ का उपयोग अन्तर्निहित होता है
हम इसके बारे में अधिक भविष्य के ट्यूटोरियल्स में देखेंगे
at the rate अंडरस्कोर वो स्पेशल वेरिएबल है जो सबरूटीन पैरामीटर्स को संचित करने में उपयोग होता है
सबरूटीन के आर्ग्युमेंट्स इस ऐरे वेरिएबल में संचित होते हैं
ऐरे ऑपरेशंस जैसे pop/shift इस वेरिएबल पर किये जा सकते हैं जैसे हम सामान्य ऐरेज़ में करते हैं
मैं इसके लिए एक उदाहरण दिखाऊँगी अब हम एक बार फिर special dot pl file पर वापस जाते हैं
स्क्रीन पर प्रदर्शित की तरह कोड टाइप करें
यह प्रोग्राम दो नंबर्स के बीच की अधिकतम वैल्यू रिटर्न करेगा
मतलब यह डॉलर अंडरस्कोर इंडेक्स ऑफ़ ज़ीरो और डॉलर अंडरस्कोर इंडेक्स ऑफ़ 1 में संचित किया जाता है
प्रिंट स्टेटमेंट दो दिए गए नंबर्स का महत्तम प्रिंट करता है
फाइल को सेव करने के लिए ctrl+s दबाएं
टर्मिनल पर जाएँ और perl special dot pl टाइप करके पर्ल स्क्रिप्ट को निष्पादित करें और एंटर दबाएं
अधिकतम वैल्यू आउटपुट की तरह दिखती है अब इस पर जाते हैं
environment वेरिएबल्स परसेंटेज % के बाद env से दर्शाये जाते हैं
environment वेरिएबल्स मौजूदा इन्वाइरन्मेन्ट वेरिएबल्स की प्रति रखते हैं जैसे की निम्न
अब एक सैंपल प्रोग्राम प्रयोग करके %env वेरिएबल को समझते हैं
हम special dot pl file पर वापस जायेंगे
स्क्रीन पर प्रदर्शित की तरह निम्न कोड टाइप करें
फाइल को सेव करने के लिए ctrl+s दबाएं टर्मिनल पर जाएँ और पर्ल स्क्रिप्ट निष्पादित करें
टाइप करें: perl special dot pl और एंटर दबाएं
हम मौजूदा इन्वाइरन्मेन्ट विवरण जैसे प्रेज़ेंट वर्किंग डायरेक्टरी pwd यूज़रनेम भाषा आदि देख सकते हैं
आगे हम एक अन्य स्पेशल वेरिएबल डॉलर ज़ीरो के बारे में देखेंगे
स्पेशल वेरिएबल डॉलर ज़ीरो $0 निष्पादित किये जाने वाले मौजूदा पर्ल प्रोग्राम का नाम रखता है
यह सामान्यतः लॉगिंग संलेखन उद्देश्य के लिए उपयोग होता है
उदाहरण के लिए: मेरे पास firstpl नामक एक फाइल है जिसमें यहाँ प्रदर्शित की तरह मैं $0 प्रयोग कर रही हूँ
निष्पादन करने पर यह फाइल का नाम first dot pl प्रिंट करेगा
पर्ल sort नामक एक बिल्टइन फंक्शन रखता है जो एक ऐरे छांटता है
एक कम्पेरिसन फंक्शन न्यूमेरिकल कम्पेरिसन फंक्शन प्रयोग करके इसके पैरामीटर्स की तुलना करेगा
यह ऑपरेटर यहाँ दिखाए गए की तरह लैसर दैन इक्वल टू ग्रेटर दैन सिम्बल्स से दर्शाया जाता है
अब इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं
टर्मिनल पर जाएँ और टाइप करें: gedit sortpl ampersand और एंटर दबाएं
sortpl फाइल अब gedit टेक्स्ट एडिटर पर खुलती है स्क्रीन पर प्रदर्शित की तरह निम्न कोड टाइप करें
अब मैं कोड समझाती हूँ पहली लाइन नंबर्स के ऐरे को घोषित करती है
न्यूमेरिकल कम्पेरिसन ऑपरेटर नंबर्स की तरह दो वैल्यूज़ की तुलना करेगा
डॉलर a और डॉलर b स्पेशल पैकेज लोकल वेरिएबल्स हैं जिनमें तुलना की जाने वाली वैल्यूज़ लोड होती हैं
और यह sort फंक्शन नंबर्स को आरोही क्रम में छांटेगा
अब प्रोग्राम को सेव और निष्पादित करते हैं
टर्मिनल पर वापस जाएँ और टाइप करें: perl sortpl और एंटर दबाएं
हम देख सकते हैं कि नंबर्स आरोही क्रम में छाँटे जाते हैं
अब एक अन्य स्पेशल वेरिएबल डॉलर एक्सक्लेमेशन देखते हैं
डॉलर एक्सक्लेमेशन यदि स्ट्रिंग सन्दर्भ में उपयोग होता है तो यह सिस्टम एरर स्ट्रिंग रिटर्न करता है यहाँ इसके उपयोग का एक उदाहरण है
यदि फाइल hellotxt नहीं होती है तो यह निम्न की तरह एक एरर मैसेज प्रिंट करेगा:cannot open file for reading : no such file or directory
अब डॉलर एट द रेट नामक एक अन्य स्पेशल वेरिएबल को देखते हैं
यह एक अन्य बहुत उपयोग होने वाला वेरिएबल है यह एक एरर मैसेज रिटर्न करता है जो eval या require कमांड से रिटर्न होता है
यह उदाहरण could not divide illegal division by zero प्रिंट करेगा
डॉलर डॉलर एक अन्य स्पेशल वेरिएबल है यह इस स्क्रिप्ट को रन करने वाले पर्ल इंटरप्रेटर की प्रोसेस id रखता है
डायमंड ऑपरेटर कमांड लाइन पर उल्लिखित फाइल्स से प्रत्येक लाइन को पढ़ने में उपयोग होता है
अब इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं
टर्मिनल खोलें और टाइप करें: gedit commandlinepl ampersand और एंटर दबाएं
commandlinepl फाइल अब gedit पर खुलती है
स्क्रीन पर प्रदर्शित की तरह कोड टाइप करें
file सेव करें
अब मैं आपको वो टेक्स्ट दिखाती हूँ जो मेरे पास sample dot txt नामक फाइल में है
अब निम्न टाइप करके कमांड लाइन से प्रोग्राम रन करें: perl commandline डॉट pl स्पेस sample डॉट txt और एंटर दबाएं
यह वो टेक्स्ट है जो हमारे पास sample dot txt फाइल में था
अगर कोई फाइल उल्लिखित नहीं है तो यह स्टैण्डर्ड इनपुट यानि कीबोर्ड से पढ़ता है
पर्ल स्पेशल वेरिएबल एट द रेट कैपिटल a r g v ऐरे रखता है कमांड लाइन से सारी वैल्यूज़ रखता है
जब एट द रेट कैपिटल a r g v ऐरे प्रयोग करते हैं तो वेरिएबल्स को घोषित करने की कोई ज़रुरत नहीं होती है
कमांड लाइन से वैल्यूज़ इस वेरिएबल में स्वतः ही रख दी जाती हैं
अब ग्लोबल स्पेशल कॉंस्टेंट्स पर जाते हैं
अंडरस्कोर अंडरस्कोर e n d सब कैपिटल में हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोग्राम के लॉजिकल अंत को दिखाता है
इस स्पेशल वेरिएबल के बाद का कोई भी टेक्स्ट इस स्टेटमेंट के बाद उपेक्षित किया जाता है
अंडरस्कोर अंडरस्कोर file कैपिटल में अंडरस्कोर अंडरस्कोर उस पॉइंट पर प्रोग्राम के फाइलनेम को दिखाता है जहाँ यह उपयोग होता है
अंडरस्कोर अंडरस्कोर line कैपिटल लेटर्स में अंडरस्कोर अंडरस्कोर मौजूदा लाइन नंबर को दिखाता है
अंडरस्कोर अंडरस्कोर package कैपिटल लेटर्स में अंडरस्कोर अंडरस्कोर कम्पाइल टाइम पर मौजूदा पैकेज के नाम को दिखाता है या यदि कोई मौजूदा पैकेज न हो तो अपरिभषित होता है
हम एक सैंपल प्रोग्राम देखेंगे कि global special constants कैसे उपयोग होते हैं
टर्मिनल खोलें और टाइप करें: gedit specialconstant dot pl ampersand और एंटर दबाएं
specialconstant dot pl फाइल अब gedit में खुलती है
स्क्रीन पर प्रदर्शित की तरह निम्न कोड टाइप करें अब मैं कोड समझाती हूँ
स्पेशल अक्षर package file line प्रोग्राम में उस पॉइंट पर क्रमशः पैकेज के नाम मौजूदा फाइल के नाम और लाइन की संख्या को दिखाते हैं
अब program को निष्पादित करते हैं
टर्मिनल पर जाएँ और टाइप करें: perl specialconstantpl और एंटर दबाएं
हम अपने प्रोग्राम में मौजूदा पैकेज के नाम फाइल के नाम और लाइन की संख्या को देख सकते हैं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
इस ट्यूटोरियल में हमने पर्ल में कुछ सामान्य उपयोग हुए स्पेशल वेरिएबल्स के बारे में सीखा
एक नियत कार्य के में निम्न करें निम्लिखित ऐरे की संख्या को आरोही और अवरोही क्रम में छाँटने के लिए एक पर्ल स्क्रिप्ट लिखें
नोट: अवरोही क्रम के लिए तुलना के लिए नीचे वाला कोड प्रयोग करें
while लूप और स्पेशल वेरिएबल $_ डॉलर अंडरस्कोर प्रयोग करके छाँटे हुए परिणाम को प्रिंट करें
प्रोग्राम को सेव और निष्पादित करें
अब परिणाम को जाँचें
निम्न link पर उपलब्ध video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे download करें और देखें
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम: कार्यशालाएं चालती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने पर प्रमाणपत्र देती है
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
spoken tutorial project भारत सरकार के एमएचआरडी के nmeict द्वारा निधिबद्ध है